जैसा कि हम देख पा रहे है यह एक मन्दिर है मन्दिर के सीढ़ियों पे एक कुत्ता बैठा हुआ है।

जैसे की हम देख पा रहे है यह चित्र मै एक टीन का शैड बना हुआ है।

जैसे कि हम देख पा रहे है यह एक कपड़े का शोरुम है जिसके अंदर तरह-तरह के कपड़े रखे गए है।

इसके ऊपर सिल्वर कलर लगाया गया है उसके ठिक आजू-बाजु में बड़े-बड़े हरे-हरे पेड़ है।

मंदिर पे पिला रंग तथा उसकी टाइल्स पे व्हाइट रंग तथा मंदिर के दोनो और भगवान जी की मूर्ती है।

एवं दूसरी इमारत में हरा रंग है उसके बीच में एक खाली जगह है जिसके ऊपर छोटी-छोटी घास छोड़ी गई है।